बहोत सारे बलूंस लगे हुए हैं पिंक व्हाइट और ग्रीन और येलो और ब्लैक कलर के।

यहां पे बहुत सारा पानी दिखाई पड़ रहा है जिसमें लहरें दिखाई पड़ रही है आस पास पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हरे हरे पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं।

जिना बना हुआ है मोटरसाइकिले खड़ी हुई है और रिक्शे खड़े हुए हैं कुछ आदमी और औरत दिखाई पड़ रहे--

पीछे कि तरफ हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं कुछ बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।